और बैठने की जगह भी है आल पाल हुआ है।

एक अपने ऑटो को ये क्लीन कर रहे हैं और --

नाव पर आते हैं। सब टिकट कटाकर धूमते हैं मस्ती करते हैं।

ठंडी मे करते हैं और कस्टम --